सामने शीशा है मिरर ताकि सब लोग अच्छे से देख के डांस कर सके।

अ जैसे कि आप देख रहे हैं सामने काफ़ी सारे पहाड़ भी हैं जोकि बहुत दूर-दूर तक बहुत सारे पहाड़ हैं काफ़ी ऊँचे पहाड़ लग रहे हैं।

जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर एक कार है सामने ये इसकी सर्विस यह सर्विस के लिए आई है क्योंकि यह सर्विस सेंटर है।

अ जैसे कि हम देख रहे हैं सामने काफी बड़ा मैदान है जिसमें की फसलें उगाई गई हैं खेत बोलते हैं जिसको और सामने पेड़ भी हैं काफी दूर-दूर तक काफी सारे हैं और उसका थोड़ा दूर जाएंगे तो काफी सारे पहाड़ भी दिख रहे हैं।

की अ ऊपर से लेके बंदा नीचे जो और सीधा जाके पानी के अंदर चला जाये और फुल एन्जॉय करने के लिए है ये वाटर --

सामने की साइड अ कुछ आ पहाड़ भी नज़र है और एक इस फ्लाईओवर को जो हैं मज़बूती से सरियों से --